यहाँ पे कुछ बिजली के तार जाते हुए दिखाई दे रहे है। यही कुछ हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे है। कुछ पेड़ों की पत्तियां इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ मट्टी दिखाई पड़ रही है थोड़ी-थोड़ी सी।

यहाँ प देखिये आपको बड़ी सी बेल दिखाय पड़ देगी। बेल में क-ख् रस्सी बंधी हुई है।

यहाँ पे देखिये एक पुतल जी की मूर्ति रखी हुई है सेंटर में। एक साइड में तीन चार मूर्ति और रखी हैं। यहाँ पे के घरा सा बना हुआ है। कुछ बड़े बड़े बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप --

कपड़े ऐसे हैं यहाँ पे देखिए टेबल पे दो लोग बैठे जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। देखिए पीछे से आपको दो ब्लैक कलर के पोस्टर भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पर देखिये आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ रहा है पीछे साइड पे और देखिए पेड़ के पास आपको बोहोत सारे ट्रक दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रक खड़े हैं सबका और यहाँ पे आपको कुछ बाइक दिखाई पड़ देख के बाइक को बोहोत सारे बाइक हैं और एक अंकल दिखाई पड़ रहे है।

और यहाँ पर आपको एक पिलर दिखाई पड़ खंबा दिखाई पड़। खंबे में बोहोत सारे बिजली के तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पोस्टर भी हैं।

यहां पर देखिए दिखिए आपको बोहोत सारी लाइट जलती हुई दिखाई देंगी कुछ पोस्टर लगे हुए है यहाँ पर देखिए पिलर में आपको कुछ जाकेट दिखाई दे रहीं --

यहाँ पर देखिये आपको दीवाल के पीछे कलर ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है सेण्टर में थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ऊपर देखिए झूमर लटकी हुई दिखाई दे रही हैं देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं लाइटें सारी यहाँ पर देखिये नीचे टाइल्स लगा हुआ है।